और हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद कलर की है और यहाँ पर उसमें कुछ गमले रखे हुऐ हैं जिनमें हरे भरे पेड़ लगे हुये हैं।

और कुछ गेट लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ पेड़ हैं बड़े बड़े हरे भरे और कुछ छोटी छोटी घास है जो की हरी भरी है।

यहाँ पर हमें एक खाली मैदान दिखाई दे रहा हैं जिसमें तारपिन चीम वु रही है।

और बड़े बड़े हैं और छोटे छोटे पेड़ भी हैं जो की हरे भरे हैं।

यहाँ पर हमें कुछ सोफ़े दिखाई दे रहे है जो की ब्लैक कलर के है और यहाँ पर कुछ कर दिखाई दे रही है।

इस पर रेड कलर की ट्रे में कुछ खाने पिने की चीजें रखी हुई हैं ।